लगता है अगरबत्ती धुप जलाएंगे।

स्टेज पर चढ़कर बैठे है।

और यहां पर दूर-दूर से लोग आते है। पेट्रोल खरीदने के लिए यहां का पेट्रोल पंप तो बहुत ही नामी है।

ये नदी है और इस नदी मे बच्चे सब है नाव पर --